यह एक बस है ॐ ट्रेवल्स --

यह एक स्टेशनरी का दुकान है।

जिसमे बहुत सारे कांटे लगी हुई है।

एक शख्स ने अपने पीठ पे ब्लैक कलर का बैग लटकाया हुआ है।